ट्रीज भी अवेलबल हैं और जो है साइड पे हैं।

ये जो है रेड और व्हाइट कलर की बिल्डिंग हैं।

ओजय राइट लेफ्ट पे जो ग्रीन कलर की जो--

लगा हुआ है और ये पोस्टर लगे हुए हैं आधार बैंक ऑफ़ बड़ौदा।

ब्लैक कलर के गेट है और वाइट कलर का जो बोर्ड है जिसपे लिखे हैं गवर्नमेंट ।

पीछे जो है फ्लैग शो कर रहे है। माउंटेन शो कर रहे है।

और लाइट लैंप अवेलेबल है उन बच्चों के लिए--

और उसके बाद जो वेहिकल हैं वो भी पार्क्ड हैं।

अपने रेजिडेंसी के बाहर जो है।

ऊपर लिखा हुआ है मैचडे हरियाणा स्टोर होलसेल एंड रिटेल रा--

और जेट पैक बॉक्स है जो अवेलबल है।

एक योगा क्लास की है जहां पे ये टीचर हैं।

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है और वहां पे लोग भी शो करें रहे और पीछे रेड कलर की बिल्डिंग शो कर रहे --

क्लो क्रो है और हियूज के पेज भी--

बिल्डिंग के एंट्रेंस में है वुड एंड क्लियर विंडोज और डोर्स --